ये यहा पे देख सकते हो--

और ये यहां पे ये मछलियां तस्ले में रखी हैं।

ये यहां पे देख सकते हो ये एक आदमी दिख रहा है।

और ये यहां पे फूल वगैरा भी पत्ते वगैर भी दिख रहे हैं।